एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

उसमें एक पंछी के पंख दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग बहोत ऊंची है।